दुकान है जहां पर चेयर लगेंगे उस चेयर पे बोहोत सारे लडकी --

और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें पानी भी है और एक बॉय है।

ये बोहोत ही खुबसूरत तस्वीर है। इसमें येलो कलर की है। जामुनी कलर है। एक लड़का बैठा है। ले --

हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बोहोत ही खुबसूरत तस्वीर है। इसपे --

और पेड़ लगा हुआ हैं केला के और बोहोत सारे लोग हैं लेडी हैं बॉय हैं।

कोई सफेदी का पेर है कोई कही का पेड़ है।

हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एक वैन है जिसमें कि लोग काम करने के लिये आते हैं ।

एक बोट चल रही है। एक खड़ी है और एक उसके बोट के अन्दर टंगा है पीले कलर की ग्रीन कलर --

सब इस तरीके से देख रहे हैं। ये हवाई जहाज है बोहोत ही खुबसूरत है। हवाई जहाज में सवारी बैठ के जाती है। व्हाइट कलर का है।

नीले कलर का है और इसमे बोहोत सारे लड्किये --

और ऐसे लोग आ रहे जा रहे है और इसमें --

किसी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। किसी ने लाल कलर की किसी ने --